यह एक शादी समारोह का दृश्य है जहां पर टेंट लगा हुआ है एवं टेंट का कलर ब्लू है।

सामने में एक घर जैसा कुछ बनाया गया है।

यहां पे अलमारी भी दिखाई दे रही है जो की लोहे की मदद से बनाया गया है एवं अलमारी का कलर ब्लैक है।

यहां पे एक अलमारी भी है जहां पर बहुत सारे सामान रखें गए हैं।

यहां पर एक गेट भी है जो की ब्लैक कलर का है उसमें कुछ टंगे गए हैं।

यहां पर एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ है एवं यहां पे एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

यहां पे एक जेंट्स दिखाई दे रहा है और साइड में बहोत सारे जेंट्स बैठे भी हुए हैं।

यहां पे एक कार भी दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक उ चादर भी लगाया है।

क्रेट का कलर ऑरेंज एवं रेड है।

यहां पे नीचे में भी कुछ बिछाया गया है उसपे बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

ये बहुत सारा पानी दिखाई दे रहे हैं एवं ऊपर में बह एक ब्रिज भी है जहां पर एक आदमी है।